सामने एक ग्राउंड है ग्राउंड में--

ग्रीनरी वाला एरिया दिखाई दे रहा है।

जिनका रंग लाल काला और ग्रे है।

और नीचे का फरश भी ग्रे रंग--

और पीछे एक रेड कलर के हैंग में बाल्टियां--

व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी है।

ऑरेंज वाइट और ग्रीन बच्चे बैठे हैं।

सामने एक ई_एल_ए_आर डेंटल क्लिनिक है जो की--

ब्लैक कलर की जींस डाली है।

कुछ लोहे का सामान पड़ा है।